एक पहाड़ नजर आ रहा हैं।

और वहां पर डिश भी दिख रही है।

कबाट के अंदर बहुत सारी चीज रखी हुई है।

यहां हमें एक दुकान दिखाई दे रही है।

कार के बाहर दो लोग खड़े हुए--

झाड़ भी नजर आ रहे हैं।

एक सीढ़ी नजर आ रही है।

यहां हमें एक बोर्ड दिखाई दे रहा है।

धार कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग एजुकेशन ।

कैफे के बाहर एक बुलेट और एक एक्टिवा दिख रही है।

एक बर्ड दिखाई दे रहा है।

बाइक और एक्टिवा दिख रही है।

हमें घास भी नजर आ रही है।

कई लोग नजर आ रहे हैं।

बेंचेस नज़र आ रही है स्प्राइट का लोगो दिख रहा है।

पंखे और स्विच बोर्ड दिख रहे है लोग भी दिख रहे है।

और कुर्सी नजर आ रही है।

एक व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है।

कांच के कबाट दिख रहें हैं।

यहां हमें बड़े दो सोफे दिख--

यहाँ बहोत सारे पौधे दिख रहें--

यहां हमें बहुत सारी घास दिख रही--

एक स्टिकर लगा हुआ दिख रहा है।